मुझको बहुत सारे लाइट सब दिखाई दे रहे हैं।

जो दो आदमी के आगे तरफ एक शौचालय है।

और बकरी के बगल में रॉड भी है।

और यहां पे मुझ को दो पंखे दिखाई दे रहे है।

यह एक मुझे शादी का घर जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो लाइट दिखाई दे रहा।

और यहाँ पे एक ब्लू कलर की दिखाई दे रहा है।

उसके बाद में घर के नीचे टेबल और कुर्सी है।